यह एक घर के बालकनी का फोटो है बालकनी में बहुत ही प्रकार के फूल को लगाया है जो कि ब्लू कलर वाइट कलर का फूल को लगाया है।

यह एक जनमोट सब ध्यानयोग है आश्रम है आश्रम का फोटो है यहाँ पे रेड कलर का पंडाल लगाया गया है।

रोड के सामने से फ़ोटो लिया गया है यहाँ पे पाँच रूपीय का पोस्टर लगाया गया है ।

जो कि पहाड़ तक जाने का रास्ता है यहाँ पर बहुत सारे गाछ वृक्ष हैं--

यहाँ पे चार बॉयज हैजो कि एक पीछे है तीन आगे है यहाँ पे बहुत सारे पेर पौधे है घिरावा किया गया है जो देखने में--

माटी के दुकान के सामने गमले में पेड़ पौधे के लगाया गया है यहां पे एक स्कूटी है जो देखने में खूबसूरत और--

येलो कलर का चेयर लगाया गया उसके सामने रेड कलर का टीशर्ट पहने हुआ एक इंसान हैजो कि हाथ में पेपर रखे हुआ है।

वहाँ कॉलेज के सामने दो लोग है एक लड़का है जो की सायकल पकड़ के खड़ा हुआ है।

यहाँ पे बहुत सारे बाइक है स्कूटरी हैजो देखने में खूबसूरत है।

यह एक सब्जी के दुकान का फोटो है यहाँ पे बहुत ही प्रकार के सब्जी को रखा गया है।

बिल्डिंग आगे सामने लोहा से घेरावट किया गया है जो के रेड कलर का दीवाल है।

जो कि कुर्सी ब्लैक कलर का है इस घर में बहुत सारे पिलर लगाया गया है जो पिलर वाइट कलर का है।

यह एक रोड के सामने का फोटो है। रोड पे एक व्हाइट कलर का कार लगा हुआ है। एक ब्लैक कलर का मोटरसाइकिल लगा हुआ है।